आते हैं यह पंडाल बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं।

यहाँ यह जंगल में चरते हैं।

यह पहाड़ बोहोत बड़ा है।

अब यह खंडर हो चुकी है।

यह ऑफिस काफी बड़ा है।

इस पार्क में बोहोत सारी चीजों की --

यह मोबाइल की दुकान में --

रियलमी के मोबाइल मिलता है।